जहाँ पर ये नई-नई लाइब्रेरी खोली जा रही है।

जहाँ पर बहुत सारे घने-घने पेड़ लगाए गए हैं।

और यह लड़की परफॉर्म कर रही है।

यहाँ पर फ्रेशर पार्टी चल रही है।